और पिच्छे ब्लू ब्लू कलर का मतलब दीवाल जैसी ब्लू ब्लू कलर कुच्छ है।

एक स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल मैं बच्चोंके खेलनेके लिए बहुत सारे हम्म झूले वगैरे बने हुए है झुलने के लिये।

ये कूछ बना हुआ है जिस का ऊपर ग्रीन कलर का कुछ डला हुआ --

ये कुछ दिखाई दे रहा है। रोड है जो ब्लाक कलर का है। दीवार वगैरा दिखाई दे रही है और दीवार पे मतलब कुछ बना हुआ है लकड़ी का।

और नीचे लकड़िया भी लगी हुई है। जिनपे कलर दिखाई दे रहा है जो येल्लो कलर क है।

पानी का स्विमिंग पूल है जिस पर एक झूला रखा हुआ है और जैसे की उसमे पानी में अंदर जाने के लिए पट्टी वगैरा है जिसमे सेम पानी में अंदर तक घुसा जा सके।

ये नीचे जमीन पर कुछ खेलने के लीये गुबु बना हूआ है और मतलब पार्क है ग्रीन ग्रीन कलर का घर है।

और मम् मौसम भी दिखाई दे रहा है जैसे की बादल वगैरा दिखाई दे रहे है धुंदले धुंदले ये सब नीचे मतलब पट्टी पे बन हुआ है।

और ग्रीन कलर का है जिस्पे ये पत्थर थमे है पेड़ पौधे है उप्पर मोशम बादल दिखाई दे रहे है नीले धुप--

कलर येल्लो है। रेड भी है और मतलब इसमे गेट वगैरा भी है।

हे कोई बड़ासा हॉस्टल लग रहा है यहा कोई साइड फूल है जिसके खिडकीया है जो काच की है जंगले है और नीचे पार्क है जो ग्रीन कलर का है।

आणि ये एक टैम्पल है यहाँ पे मतलब भगवान है कोई से और मतलब ये इसके पिछे है।

बड़े बड़े पेड है उसके आइट साइड मे बहुत सारे हरियाली है जो की ग्रीन ग्रीन सी है और जो व्हाइट घर है उसपे रेड रेड कलर का--